इस फोटो मे हमे --

इस जिम के अंदर बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग मशीन है वह दो आदमी खड़े हैं ।

एक बस का रंग गुलाबी है।

वे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है | उस व्यक्ति ने लाल टी शर्ट पहने हुए हैं।